यहाँ पर कुछ पब्लिक्स है और कुछ लोग भी चल रहै है।

ओर यहाँ पर कुछ बाउंड्रीय्स भी बनी हुई है ओर बड़े-बड़े पत्थर भी रखे हुए है।

ओर उसके अंदर कुछ समान रखा हुआ है सामने पहाड़ है ऊपर बादल दिख रहे है घन सारे ओर आइड- साइड --

सामने एक सुमिंग पूल है यहाँ पर गोल -गोल टोरींग हैं।

यहाँ पर एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है जो की केक है येलो एण्ड चॉकलेटी --